रेलवे स्टेशन का फोटो है यहाँ सामने एक आदमी हाथ धो रहा है और जो बिल्डिंग बनी है उसे बिल्डिंग उसके ऊपर दो ब्लैक कलर की टंकियाँ रखी हुई है उसके आगे बहुत सारी जालियाँ हैं उन जालियाँ का कलर येलो एंड ग्रीन कलर का है।

साइलेंट छोड़ी है आसपास टिश्यू पड़े हुए हैं| एक बोतल है पानी की एक वाइट कलर का बाउल भी है और उसको साफ कर दिया हैं।

रेलवे स्टेशन का फोटो है| यह की जमीन का कलर ग्रे है| यह पर बहुत सारी रेल की पटरियां नजर आ रही है| शैड लगा हूआ है।

कई सारी गाड़ियां खड़ी में और कई सारे लोग हैं| एक लड़की नजर आ रही है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई--

एक पंखा लगा हुआ है| अंदर अंधेरा है बाहर धूप है| ऊपर जो छत का कलर है वो येलो कलर की छत है| नीचे ज़मीन पक्की बनी हुई है।

एक डेरी नजर आ रहे हैं जिस डेरी का नाम मुजफ्फरपुर डेरी है| बाहर जालियाँ लगी हुई है| अंदर एक औरत खड़ी हुई है| उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ हैं।

डेरी का कलर व्हाइट एंड रेड है| पक्की ज़मीन है| एक आदमी खड़ा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है| साइकिल लेकर खड़ा हैं वो|

कच्ची जमीन है यहाँ पर कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं कुछ पेड़ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कई सारे पत्थर हैं।

शाम का टाइम है नीला आसमान है दो बिल्डिंग्स न-नज़र आ रही है एक लैंप लगा हुआ है बहुत सारी क्यारियां है यहाँ पर अलग-अलग गमले लगे है रेड कलर के टाइल्स लगे है यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए है।

दिन का टाइम है धूप निकल रही है ये एक मकान के गेट का फोटो है इसके आसपास तीन बांस लगे हुए है एक फिसल पट्टी बनी हुई है कई सारे जीने हैं ग्रीन कलर की दिवार है।

मशीन नज़र आ रही है| बहुत सारी एक स्टूल रखा है ग्रीन कलर का।